ये चार -पाँच देख सकते हैं हिरण है इसमें उसके चारा देने के लिए डब्बा रखाया गया है इसमें डब्बा एक दो तीन चार पाँच छे सात आठनौ--

पेड़ - पौधे हैं बहुत सारे देख सकते हैं किसी बहुत सारे हिरन हैं एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ तरह के हैं देख सकते है सभी लोग आइये --